बिस्किट नमकीन जूस फ्रूटी चॉकलेट --

सामने ऊपर लाइटें जल रही हैं और कुछ लोग डंबल लेकर एक्सरसाइज कर रहे हैं।

ये फोटो एक सब्जी मंडी के--

रखे गए हैं और बोहोत से लोग इस मंदिर में खड़े हैं।

यहां पर अह हरी-हरी मिर्ची लाल मिर्ची और --

यहां पर शीशे में कुछ कड़े गले के सेट हार चीनी अंगूठी रखी गई है।

और तीन चार कुर्सियां यहां पड़ी है।

घूमने के लिए यहां पर गाड़ियां खड़ी है और एक तरफ आइसक्रीम की रेहड़ी लगी है एक लोटा लगा है और एक लाल रंग की गाड़ी है।

दुकान के स्टोर रूम के टेबल पर यहां पर नीचे--

ये फोटो एक खुले ग्राउंड की है यहां पर सामने--

फूलों के हार की दुकान है।

ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा हैं।

कीड़े की है इसमें बहुत सारे कीड़े--

ये फोटो एक किसी घर की फोटो है।

छोटी छोटे लाइटें लगी हुई हैं और ग्रिल लगी है।